और यह दुकान सफेद और लाल कलर से बनी हुई है।

एक कारपेट बिछा हुआ है।

यहां पे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

काफी सारे कपड़े मिलते हैं कपड़े यहां पे सामने की तरफ--

यह एक कंप्यूटर की दुकान है।

यहां पे एक अंकल भी खड़े हुएं हैं।

यहां पे काफी सारे छोटे बच्चे और दो बड़े लोग खड़े हुए हैं।

कपड़ो की दुकान है यहां पर काफी सारे कपड़े मिलते हैं।

यहां पे उनके ऊपर बेलपत्र और उनका सामान--

इनकी चोंच रेड और वाइट कलर की है।

यहाँ पे काफी तरह के कपड़े लगे हुए हैं।

यह तस्वीर महात्मा बुद्ध की हैं।

यहां बीच में महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं।

पे छोटासा किनारा बना हुआ है।